नदी में बहुत सारी गहराई है।

और आसमान का रंग नीला दिख रहा है।

रेड कलर का दुकान है उसमें ताला लॉक है।

ये बहुत सुंदर सी गार्डन है उसमें घांस बहुत बड़े बड़े हैं उसका कटिंग भी किया गया है।

बहुत बड़ा घर है चारों बगल घर है बीच में एक अंगना है।

इसके पीछे साइड में बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष भी है।

पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के उधर बहुत सारे सफेद सफेद लाइट लगाए गए हैं।

एक बहोत सुंदर दुकान है दुकान के बाहर बहोत सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं।

दो तीन व्यक्ति खाना रहे हैं।

और बाहर में पांच सात के मात्रा में रेंप लाइट भी लगाए गए हैं।

रेक में बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

और वहां एक व्यक्ति टोपी पहन के खड़े हुए हैं।

प्लेग्राउंड और बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए है।

में एक व्यक्ति खड़े हुए हैं ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के।

एक एच_पी का पेट्रोल पंप है।

एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।

चार मंजिला बनाया गया है।

ये बहोत सुंदर दुकान है।

एक बहुत सुंदर ओवर ब्रिज बनाया गया है।

सैमसंग का सर्विस सेंटर करते हैं।

ईटा का गथनी भी हो रहा है।